रोड पे ऑटो रिक्शा चल रही है दो आदमी हैं बगल में घर है पेड़ पौधे हैं।

समुदायिक भवन है समुदायिक भवन के बाद एक टावर और एक छोटा टावर है उसके पीछे --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

बोर्ड भी है वायरिंग किया गया है।

हैं इस प्रांडगण में कुछ लड़कियां--

इसके बगल में एक ढाबा है जिसका नाम काल भैरव ढाबा है।

यह शादी के लिए जय माल का स्टेज बनाया गया है जिसमें पीछे फूल--